फंक्शंस होते हैं स्कूलों के कार्यक्रम जो स्कूलों में आयोजित होता है।

उसमें ये बच्चों ने किया है रंगारंग प्रस्तुति दी है वहीं का ये है।

ये एक जगह है जो अअ बनी हुई हैजो आ जगह-जगह जब हम लोग जाते हैं घूमने के लिए--

और वो घर वुडेन हाउस जिसे कहते हैं मतलब लकड़ी का भी निर्माण है इससे-इसमें--

ये एक धार्मिक स्थल लग रहा है जहाँ पर मंदिर जिसे कहते हैं पूजा अर्चना की जाती है।

और मूर्तियां भगवान की बनी हुई हैं कफी अच्छे से सजाया है फूलों से सजाया है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हवेली नाम का होटल है ए_सी नॉन ए_सी रूम्स है अवेलेबल --

और चम्मच और जिसे फोर्क कहते हैं वो है।

जो पानी का फव्वारा है वो लगा हुआ है।

गाड़िया पार्क है कार है और घर भी बना हुआ है छोटा--

बहोत सारी चीजें जोअ हमारे अअ खाने पीने का सामान--

इस तस्वीर में अअये दिख रहा है कि किसी जगह पर अअदुकान के बाहर या किसी एक ऑफिस के बाहर--

जैसे नमकीन वगैरह और जो बच्चों की चीजें होती हैं वो सब मिल जाएंगी।

जो मछली का होता है मछली का वो बना हुआ है।

और बाहर का ये नजारा है हरियाली है।

ये एक होटल जो रेस्टोरेंट टाइप का होता है उसके अंदर का अश आन है।

और इसके अंदर एक महिला और बच्चा और कुछ आदमी भी जो वर्कर होते हैं वहां के वह खड़े हुए हैं टेबल कुर्सियां लगी हुई ।

और ये गार्डन एरिया लग रहा है जहां पर छोटा सा गलियारा बना दिया है जिसमें गमले रखे हुए उन गमलों में छोटे छोटे पौधे लगे हुए--

ये जगह एक पार्क है जहां पर हम लोग पार्क में घूमने जाते हैं वहां पर ये जो गोल गोल छत्रियां जैसी बनी है।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है यूनिवर्सल बुक शोरूम है।